और अगल बगल में पेड़ पौधे मस्त हरियाली बहुत है देखने में बहुत मस्त लग रहा है ये पुरा हरिया--

देखिए यहाँ पर यह मस्जिद काफी सुंदर मस्जिद है कार्केट वगैरा चोंगा भी ऊपर में लग रहा है अगल-बगल देखिए इसको तार गाछ इधर है हरियाली अच्छी लग रही है देखने में मौसम भी काफी सुंदर है।

यहाँ पर मिक्चर वगेरा और दिया गया है देख सकते है आप यहां तीन चार ठो मशीने आपको यहां देखने को मिल रहा है कितना मस्त मशीने इससे डी_जे भी बजाया जाता है और काफी आवाज करता----

देखिए यहाँ पर कितना मस्त ये लग रा है। बिजली का खम्बा है। यहाॅं पर सब जगह लाईन वगेरा को जाते हैं और गिट्टी उट्टी भी काफी रखा हुआ यहाँ पर।

यह सेब फल लग रहा है फल का मार्केटिंग है फल का दुकान है यहाँ पर सेब वगैरा को देखने को मिल सकता है देख सकते है आप।